और सामने बोर्ड है जिस पे बी_ए_एस_बी_एस लिखा हुआ है।

और सामने एक सीसा लगा हुआ है काफी बड़ा सीसा है वो।

हेलो फ्रेंड देखिएगा सामने यहां पर सफेद कपड़े में बहुत सारे--

और पास में देखिए काले कलर के जो बोर्ड लगे हुए हैं पर्दे लगे हुए हैं।

जिसमें देखिए कि भगत सिंह की फोटो है।

और पिलर जो है गुलाबी कलर के स्कूल पीले कलर का है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा यहां पर बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सी राधा कृष्ण की मूर्ति सजी हुई है।

मूर्ति है राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है और पीछे जो है लाल कलर की दीवार है।

हेलो फ्रेंड देखिए यहां पे बहुत बड़ा पिंजरा है जिसमें काफी सारी चिड़ियां हैं कबूतर हैं।

और कुछ चिड़ियां सफेद कलर की है।

हेलो फ्रेंड देखिए यहां पर सामने एक मिठाई की दुकान दिख रही हैं।

एमआर स्वीट्स ठीक है और ये देखो अंदर बहुत सारी मिठाई है।

पास में ती-दो तीन व्यक्ति दिख रहे हैं।

हॉल नजर आ रहा है बहोत बड़ा सा और आजू बाजू बहोत सारे के बुक्स रखी हुई है किताबें रखी हुई है।

बीच में कुर्सियां रखी हुई जिसमें लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं।

हेलो फ्रेंड देखिएगा सामने एक दीवार नजर आ रही है।

हेलो फ्रेंड देखिएगा सामने एक दुकान नजर आ रही है एक बोर्ड नज़र दो बोर्ड नज़र आ रहे हैं।

अ नीचे भी एक दुकान है ऊपर जिम है।

हेलो फ्रेंड देखिएगा पास में एक दीवाल है दीवाल के ऊपर बैनर लिखा हुआ है जो हरे कलर का बैनर है उसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू --

नीचे जो टाइल्स नजर आ रही है सफेद कलर की।

सामने देखिएगा फ्रेंड्स बोहोत सुंदर सा पार्क दिख रहा है।

जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड है उसपे लिखा हुआ है।

आजू बाजू टीन सेट की छत ऊपर छत है टीन सेट की दिवाले बनाई गई हैं।

हेलो फ्रेंड देखो ये सामने बहुत काफी बड़ा सा--

जिसके ऊपर लिखा हुआ है श्याम सुपर मार्केट श्याम सुपर मार्केट लिखा हुआ हैं।

शानदार सा मंदिर दिख रहा है जिसके अंदर भगवान की मूर्ति है यह मंदिर ऊपर से काफी सजा हुआ है।

और काफी बड़ा ये ट्रक दिख रहा है।

ये एक ओ बोर्ड लजर आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है लाइन क्लब ऑफ लाहौर होस्ट वेलफेयर ट्रस्ट--

हेलो फ्रेंड देखिए गा यह काफी सुंदरसा एक--

और ऊपर दीवारें हैं सफेद कलर की लाइटें लगी हुई हैं।

हेलो फ्रेंड देखिएगा यहां पे बहुत बड़ी सी टेबल रखी गई है सामने जिसके ऊपर खाने पीने के पैकेट्स रखे हैं बहुत सारे।

हेलो फ्रेंड देखिएगा सामने एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है पी यहां पर पीछे देखिए एक बड़ा सा फायर टेंपो है।

यहां पर पास में कंप्यूटर लिखा हुआ है।

हेलो फ्रेंड देखिएगा यहां पर सादी का स्टेज दिख रहा है बहुत ही शानदार है बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइटें लगाई गई हैं ऊपर जो झूमर दिख रहे हैं दो झूमर दिख रहे हैं बड़े-बड़े।

बड़ी सी दुकान दिख रही है जो कि कांच की बनी हुई है कांच से सजी हुई है।

मिठाई भी रखी हुई है नीचे काफी सारी एक बच्चा जो मिठाई खरीद रहा हैं।

और काफी सारी भीड़ है जो नीचे इकट्ठी हुई है जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं बच्चे भी हैं।

एक ही आदमी है जो अंदर बैठकर काम कर रहा है।

एक लड़का खड़ा हुआ है जो हाथ दिखा रहा है हाय कर रहा है किसी को।

और उसके अंदर देखो काफी सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

हाथ में सफेद कलर का फूल लेके फोटो खींचा रहा है।

हेलो फ्रेंड देखिएगा सामने बहुत बड़ा हॉल नज़र आ रहा है।

पास में खाने पीने की ढेर सारी चीजें यहां पर रखी हुई है।